एक जिम है इसमें सारी चीजे उपलब्ध है पंखा है यहाँ पे साफ सुथरा है एक इसमें --

मेडिकल की पढाई करने जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए और इसमें अच्छे से पढ़ाई होता है जो की बहुत सारे लड़के --

क्लिनिक है चेक कराने का जो कि इसमें लाइट एसी पंखा सब लगा हुआ है इसमें कुछ चीजे है।

उसका टायर भी अच्छा दिख रहा है उसका शीट भी अच्छा दिख रहा हैउसका लाइट भी अच्छा दिख रहा है और अंदर लाइट भी लगा हुआ है और अंदर कुछ बाइके है।

अंदर धुंधला दिखाई दे रहा है और ये बहुत पुराना है जो की इसमें काई लगाया हुआ दिख रहा है।

ओअलडी जगदलपुर का है जो की इसमें खाली बॉयज पढ़ते है।

ए जेंट्स लोग का कपडा है जो की बहुत तीन रंग मे है बहुत सूंदर दिख रहा है नीचे लाल कलर का है शेरवानी है जो की शादी मे --

जो की हर सामान मिलता है इसमें खाने की चीज अउ बनाने की चीज सभी चीज मिलता है इसमें --